इस फोटो में एक रेमंड्स कंपनी का दुकान दिखाई दे रहा है।

कुछ कपड़े एक टेबल पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बहोत सी रेत और गिट्टी डली हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो किसी बस्ती का फोटो दिखाई दे रहा है।

और बहुत सी घंटियां भी टंगी हुई दिखाई दे रही हैं।

ऐ फोटो एक खंडहर किले का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें बोहोत सी फूटी हुई इमारतें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

और नीचे हारती की मूर्ति भी बनी हुईं दिखाई दे रही है।

इसमें ट्रक पर बहोत सी मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

साइड में एक लोहे का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

साइड में सीढ़िया भी बनी हुई दिख रही है।

पीछे आसमान भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

आस पास बहोत से छोटे छोटे पत्थर भी डले हुए दिख रहे हैं।

एक बुनाई की मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ कागज भी डला हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पार्क के चारों तरफ बाउंड्री भी बनी हुई दिख रही है।

और इसमें बहोत सी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

साइड में एक लाइट का खंबा भी लगा हुआ दिख रहा है।